अब कोई घर उर चाहे कुछ मार्ग पे बनाया जाता है जैसे लोग अपना बनाए रखते है के लिए कोई बहुत पुराना-पुराना आदमी होता है जो है जो अच्छा आदमी होता है जो काम-वाम अच्छा किया रहता है उनके लिए यहाँ पे बनता रहता है।